इस दृश्य में हम देख पा रहे यहाँ पर ये एक पार्क है जिसमे की देखिये बहोत सारे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर झूला झूलते हुए बोहोत सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये दो दुकाने बनी हुई हैं और यहाँ पर देखिये दुकान के ऊपर अंकित बुक डिपो --

दे रहे हैं यहाँ पर जमीन पर तिरपाल बिछा हुआ है जिस पर बोहोत सारे मछलिया रखी हुई हैं यहाँ पर कुछ लोग आते-जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सामने की तरफ तराजू रखे हुए हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहे ये एक बहोत बडी सी दुकान हैदुकान में देखिये बहोत सारी अलमारिया बनी हुई है सभी अलमारियो में बहोत सारा सामान भरा हुआ है।

इस दृश्य में हम देख पा रहें हैं यहाँ पर ये अलमारियाँ बनी हुई हैं और देखिये यहाँ पर इसमें बोहोत सारे तरबूज रखें हुए हैं बोहोत सारे कच्चे केले बोहोत सारे गोभी और अनानास रखें दिखाई दे रहें हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक नदी है देखिये यहाँ पर एक बड़ी-सी नाव दिखाई दे रही है जिसमें की कुछ लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है यहाँ पर सभी लड़कियों ने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने --

दृश्य में हम देख पा रहें हैं ये एक ब्यूटी पार्लर के अन्दर का दृश्य है जहाँ पर देखिये सामने की तरफ बैठने के लिए एक सोफा लगा हुआ है और एक मेज पड़ी हुई है मेज के उपर एक गुलदस्ता रखा हुआ है।

दिवार पर बोहोत सारी सीनेरी लगी है सामने अलमारी बनी है जिसमे बोहोत सारे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें बोहोत सारे फूल रखें हुए हैं पीछे की तरफ बोहोत बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए दिख रहें जमीन पर हरी-भरी घास लगी हुई --

यहाँ पे किनारे की तरफ एक स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है यहाँ पर इसमें जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं।

दूध जैसा सफ़ेद है यहाँ पे बड़े-बड़े से पत्थर भी पड़े हुए हैं और कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहें ये किसी मदरसे के अन्दर का दृश्य है यहाँ पर देखिये बोहोत सारे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो की पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक --

इस दृश्य में हम देख पा रहे एक मस्जिद बनी हुई है जिसको सफ़ेद और हरे रंग से रंगा हुआ है यहाँ पर ऊपर की तरफ बहौत झंडियां लगी हुई हैं यहाँ पर छोटी-छोटी मीनारे बनी हुई है और छोटे-छोटे गुम्बद बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

खड़े हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने की बडा सा ताजिया पकड़ा हुआ है ताजिया बोहोत सुन्दर बना हुआ है।

को धोत्ते हुए दो लोग दिखाई दे रहे है।